लीची के कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं।

अज्वा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एम.आर.पी सात सौ तीस रुपये लिखी हुई दिखाई दे रही है।

बिजली का तार नजर आ रहे है बादल दिखाई दे रहे हैं।

दो व्यक्ति मकान के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति आते हुआ दिखाई दे रहा है।

लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

लोहे का गेट लगा हुआ है एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक लड़का का टोपी लगाया हुए खड़ा हुआ है।

जिसके मिरर पर पियोर वेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है | मिरर पर चाय कॉफ़ी चाइनीज़ इडली पाओ गुलाब जामुन डोसा समोसा --

कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही है | सीढ़ीओ पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है | पेड़ दिखाई दे रहा है |